इस पिक्चर में मुझे लोग दिख रहे हैं।

यहां पे मुझे सिलेंडर दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे गेट दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे पानी दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे पत्थर दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे कपड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे पहाड़ दिख रहा है।

इस पिक्चर में मुझे गाड़ी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे बाटा का शोरूम दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे पिलर दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे वाइन दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे नैपकिन दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे टोमेटो सॉस दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे सैलून दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारा लोग दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे घर दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे पेड़ दिख रहा है।

यहां पे मुझे रोड दिख रहा है।

यहां पे मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं।